एक रूम है जिस रूम का कलर व्हाइट कलर का है और उसका टाइल्स भी बहोत ही क्लीन है।

है और टेबल्स के ऊपर ग्लासेस सेट किए गए है टिशू पेपर का सेट है उसके ऊपर।

और इसमें येलो कलर का करटेन लगाया हुआ है दरवाजा यहां पर खुला है।

एक रेस्टोरेंट का किचन है जिसमें बहोत सारे ग्रोसरीज रखे हुए स्टैंड में और बहोत सारे--

रोटियां यहां पर दाल कर रखी गयी हैं एक कढ़ाई है।

इसमें एक ए_सी लगाई गई है वाइट कलर की ब्लू कलर की उसकी आउटलाइन है।

एक टॉय शॉप है जिसमें बहोत सारे टॉयज हैं बहुत सारे--

और पप्पीज है और ये जो दुकान है उसका कलर है रेड कलर में कैमराज लगा हुआ है यहां पर--

कंपनी है यहां पर कुछ आदमी लोग ठहरे हुए हैं और यहां पर आदमी है जिसने चेक्स चेक्स का शर्ट पहना हुआ है ब्लैक कलर का उसमे बैग लगाया हुआ--

ये एक वाटर पार्क है जिसमें बहोत बड़े बड़े स्लाईडर्स है।

और जो छोटे -छोटे लटकन टाइप फ्लावर्स भी लगाए गए हैं।

इसके पास एक मिल भी है और एक बड़ा सा बैनर लगाया गया है अवंथी डिग्री कॉलेज का --

कुछ लोग यहां पर खरीद रहे हैं और एक लड़की यहां पर कॉल पर बात कर रही हैं।

एक कॉफी शॉप है जिसका पूरा सेटअप गोल्डन कलर में है और वाइट कलर में किया गया--

एक जंगल है घना सा जिसमें बहुत सारे सूखे पेड़ है।

छाव पेड़ों की वजह से नीचे गिर रही है मट्टी पूरी यहां की ब्राउन कलर में--